गन्ने की झोपड़ी बनी दिखाई दे रही है।

पीछे बड़ी-बड़ी सी मीनार ई-जैसी दिखाई दे रही है।

ये हमें बड़ी सी दुकान लंबी सी दुकान में ठेले लगे हुए दिखे हैं सब्जी और फलों के।

में दुकान पर कुछ पट्टियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है सामान की।

लोग बाजे बजाते हुए दिख रहे हैं ये। पीछे एक सुंदर सा सजा हुआ रथ --

पौधे लगे हुए हैं। डिजाइन में पौधे बने हुए हैं।

लंबा से मीनार बनी हुई है। पूरी मंदिर दिखाई दे रहे हैं।

ये रेत डली दिख रही है सामने। ये टीनसेट की बड़ी सी दुकान खंभे लगे हुए हैं ये। रेत --

ज़ेबा सैफी हॉस्पिटल दिख रहा है। ऊपर के फ्लोर दिख रही है। हॉस्पिटल के कांच लगे हुए हैं जिसमें।

ये हमें मल्टियाँ दिख रही हैं बनी हुई बड़ी-बड़ी सी मल्टियाँ दिखाई दे रही हैं ये।

थर्ड फ्लोर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर की ये --